काला टी_शर्ट पहने हुए है और आपस में हाथ मिलाए--

जाकर आप आनंद ले सकते हैं अपने कुछ समय के लिए यहाँ शांति मिलेगी आपको जो भी जाएगा उसको। .

यहाँ ये रोड है और रोड में गाड़ी चल रहा है एक गाड़ी सफेद कलर का है एक गाड़ी हल्दी कलर का है और यहाँ पे खम्बा लगा हुआ है तार -वार लगा हुआ है अउ बहुत ही सुंदर और अच्छा दिख रहा है।

शहर है और यहाँ कुछ दिखाया हुआ है और इतना यहाँ भीड़ है रोड में कि यहाँ कुछ हो रहा है जैसे लग रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं या कोई वीडियो बना रहा है और यहाँ कुछ हो रहा है वाकई यहाँ रुके हैं सभी --